यह गाजरे साफ पानी से धुली जाएंगी।

यहां पर बैठने के लिए ब्लैक कलर की चेयर और ब्लैक कलर के टेबल हैं।

इस इमेज़ में एक बहोत सुन्दर जगह नजर आ रही है।